इमेज में यहां पर देखिएगा एक शोकेस दिखाई दे रहा है जहां पर फुटबॉल नजर आ रही है और कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और ऊपर पुल पर एक आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर एक खिड़की भी सामने नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहाँ पर कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर गेंदे के ढेर सारे फूल नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिएगा कुछ लोग बैठे लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने देखिएगा यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर एक लड़का गिटार बजा रहा है और यहां पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इसे इमेज में देखिएगा यहां पर दो घर दिखाई दे रहे हैं और यहां पर देखियेगा पौधों में फूल आते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक रोबोट दिखाई दे रहा है और उसके पास में एक बच्ची खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखीयेगा सामने यहां पर कुछ ट्रैफिक दिखाई दे रहा है जहां पर कार टेंपो और ऑटो रिक्शा चलती नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने देखिएगा सड़क के पास में एक बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है जहां पर यूनिवर्सिटी लिखा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर एक बस स्टैंड भी दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी पर दो कुछ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और बोर्ड पर हमारा भवानी आयुर्वैदिक हेल्थ सेंटर लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और यहां पर आसपास कई सारे पेड़ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कैंडल जलती दिखाई दे रही है और यहां पर और रात का समय भी नजर आ रहा हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा दुकान दिखाई दे रही है और नीचे यहां पर कुछ कारे खड़ी हुई नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर ये लड़का कसरत करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक इमारत दिखाई दे रही है और सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है और यहां पर देखियेगा साइड मे कुछ लड़के लोग बात करते नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक स्टेडियम दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लड़के लोग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी जिम दिखाई दे रही है और यहां पर देखिएगा कुछ लोग कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है और नीचे देखियेगा कारें लाइन से खड़ी नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर कुछ लेडिजे पूजा करते हुए दिखाई दे रही है और यहां पर देखीयेगा गुब्बारे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर देखियेगा नीचे बड़ा सा ग्राउंड भी नजर आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेग सामने यहां पर एक लड़का दिखाई दे रहा है जो देखियेगा पेन को पैकिंग करता हुआ नजर आ रहा है।